इस रूम में फ्रिज भी है और वॉशिंग मशीन भी और टी_वी भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत लंबा टेंपल देख रहा है जिसके नीचे छोटे छोटे भी है।

बिल्डिंग के नीचे में एक पोस्टर भी लगाए हैं उसके आगे मुझे दो गाड़ी देख रहा है एक गाड़ी से पीछे से देख रहा है और एक गाड़ी चलते हुए देख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक दुकान देख रहा है जहां बहुत सारे सामान है कुछ प्यारे प्यारे मग है और कुछ प्लेट भी है।

मुझे इस तस्वीर में दो रेस्टोरेंट देख रहा है एक रेस्टोरेंट के नाम अच्छा से दिख नहीं रहा है बट उसके पोस्टर येलो कलर में है और दूसरे रेस्टोरेंट मिलन रेस्टोरेंट लिखा गया है उस--

मुझे इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा समुंदर दिख रहा है समुंदर के पानी पूरा गंदा होकर है।

सूरज हाफ निकलते हुए दिख रहा है।

घर के बाहर व्हाइट कलर में रेड कलर से कुछ लिखाया गया है उसके नीचे ब्लू से कुछ लिखा गया है।

के आगे दो घर है एक घर की कलर ग्रीन है और दीवारों में रेड और ग्रीन की लाइन बनी हुई है।